ये इतना सुंदर दिख रहा है प्राकृतिक लग रहा है बहोत --

यहाँ पे बहोत भीड़ है बहोत अच्छा मेला लगा हुआ है यहाँ पे इतना--

दिखाई दे रहे है बादल भी है हरा हरा पोधे भी है बहुत सु--

क्योकि जो भी मिठाई चाहिए आप यहाँ से ले सकते है। .

है और कुछ अंदर जा रहे है आप यहाँ--

आप जा के कभी यहाँ पे जा के देखिए बहोत अच्छा--

बहोत बहोत बहोत अच्छा रहे यहाँ पे--

अम ये टेबुल पे बहुत अच्छा लग रहा है एक--

अ भी है प्राक्रतिक जो है हरा-भरा भो जो भगवान--

घुमने के लिए भी मिलेगा आप घुमने जा सकते --